बड़ा-सा एरिया है जिसमें बोहोत सारा पानी भरा हुआ पाए पानी का कलर पूरा ब्लू है दूर में पहाड़ दिख रहा है जो काला-सा है ऊपर आसमान पूरा वाइट है पानी में ढोगा है।

ऊपर में बहुत सारी बुक टंगी है एक लाइट जल रहा है जो व्हाइट कलर का है ऊपर में और कुछ मैगजीन है जो व्हाइट एण्ड ब्लू रेड कलर की है अंदर ग्रीन कलर की सजी हुई --

बहुत बड़ा सा पक्के का मकान है सामने दीवार येलो कलर की है जिसमें एक प्लस सिग्नल बना हुआ है उसके ऊपर एक मूर्ति टंगी हुई है जिसके दोनों हाथ में काटा लगाया हुआ है।

एक घर दिख रहा है जिसकी सीलिंग व्हाइट है सामने में एक प्लस सिंबल बना हुआ है जिसमें एक मूर्ति टांग रही है नीचे इधर साइड में बहुत सारे टेबुल चेयर है जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।